और यह कुछ काम कर रहा है।

और यहाँ एक व्यक्ति भी खड़ा है।

जहाँ पर कई तरह के सामान है।

और छोटे-छोटे गावों को देख पा रहे हैं।

यह एक बहुत सुन्दर मेला है।

और कई सारे दुकानें भी है। यहाँ एक सब्जीवाला भी खड़ा हुआ है।

यह एख टूशन सेण्टर की तस्वीर लगती है।

आम सेब आदि फल रखे हुए हैं।

यह एक धर्म सम्मेलन की तस्वीर है। यहाँ पर --

का प्रयोग भी किया गया है।